इस चित्र मे एक शादी का स्टेज सजा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमे दो सोफे रखे हुए दिख रहे हैं । आसपास कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

सामने एक काले कलर की बड़ी मूर्ति रखी दिख रही है।

इस चित्र में बहोत सारी बाइकें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैंपीछे कुछ पेड़ भी लगे दिख रहे हैंऊपर --

राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर एक कॉलेज भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक क्लासरूम दिख रहा है जिसमें कुछ कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

सफ़ेद फूल बने हुए हैं और गोल्डन पत्तियां बनी हुई दिख रही हैं इसके पीछे कुछ समान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है दो कुर्सियां भी रखी हुई दिख रही हैं।

चित्र में एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ कुर्सियां रखी गई दिख रही हैं कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए है।

और आसपास चाकलेट भी डाली हुई दिखाई दे रही है बीच में एक लाल फूल भी बना हुआ है।